जैसा कि आप सामने देख ही रहे हो सामने एक पिक्चर दी गई है बहोत ही खूबसूरत।

जैसे कि आप देख ही सकते है ये बहोत सुंदर जगह बनी हुई है।

और दो व्यक्ति यहां पर साइड में खड़े हुए है।

बाहर ट्रक लगा हुआ बहोत अच्छा--

और देखिए आसपास के लोग भी कितने देख रहे हैं।

जीसमें अलग अलग प्रकार के गमले लगे हुए हैं।

और उसके सांस में देखी एक शानदार घर लगा हुआ है।

घर को शानदार बना रहे हैं।

अ गुरुद्वारा में बहोत शानदार लाइटिंग वगैरा भी किए गए हैं और जैसे कि आप सामने देख रहे हैं सामने--

पर एक नाव भी खड़ी हुई है।

जो अपना काम कर रहे हैं या फिर बोल रहे हैं।

उसके ईलावा देखा जा सके तो सामने तो सामने बना हुआ है उसके सामने देखा जा सके तो बैठने के लिए जगह भी काफी है।